बहुत अच्छा लगता है। पैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होते कभी हम भी बच्चे थे तो हमें भी --

हर कलर के फ्लावर हैं और येलो वाले पिंक वाले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और जो डार्क ग्रीन में हैं वो तो माशाल्लाह --

'' तो ये चलती हुई ट्रैन से ली गई पिक्चर है। आगे हाउस है। आई डोंट क्नोव व्हाट इस थिस बूत ये अच्छा लग रहा है देखते हुए। ''

तभी तब के जमाने में ये बहोत ज्यादा चलते प्लस सिंपल सोबर है अच्छा यह भी लगता है बट आजकल के जो चलते हैं वो अलग चीज है लेकिन पुराने जमाने में ये ज्यादा --